इस चित्र में हमें एक ईमारत बनाते हुए इंसान दिखाई दे रहा है दो लोग ईमारत बना रहे है।

दरक पे गेट है छाता है।